चित्र में एक पुल है जिसमें तिरंगा झंडा लहराया जाता है।

बिल्डिंग के सामने एक बिजली का खंभा है।

चट्टान के आसपास झाड़ियां दिखाई दे रही है।

मैदान में हरी हरी घास लगी हुई हैं।

नदी के बाजू में पुल बना हुआ है।

आदमी ने गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई हैं।

बैनर में ए_के फिटनेस जिम सेलिब्रेशन लिखा हुआ है।

कुछ लोग पेड़ के पास बैठे हुए हैं।

इस चित्र में एक ढाबा दिखाई दे रहा है ढाबे का नाम स्टार द ढाबा है।

चार इंग्लिश टॉयलेट है और बड़े-बड़े टाइल्स लगे हुए हैं।

कुछ आसपास दुकानें दिखाई दे रही हैं।

तीन चार लोग यहां वहां खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे उपकरण रखे हुए हैं।

जिम में एक लड़का बॉडी दिखा रहा है।

टेबल पर एक पानी की बॉटल है और दो कप रखे हुए है।

और एक टिकट घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

टमाटर एक प्लास्टिक की टोकरी में रखा हुआ है।

घर के ऊपर दो सोलर पैनल लगे हुए हैं।

दो आदमी छत के ऊपर खड़े हुए हैं।

एक आदमी ने पीले रंग का हेलमेट पहेना हुआ है।

मैदान के पीछे बैनर लगा हुआ है।

मैदान में बहोत से लड़कियां बैठी हुई है।

इस चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है।